मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

कुर्सी लगी हुई हैं और रूम में लाइटिंग लगी हुई है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

और कुछ दवाइयां भी दिख रही हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।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

और चित्र के अंदर केक और बैलूंस दिख रहे हैं।

चित्र में एक नीलम कंप्यूटर शॉप दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

एक लड़का ब्लैक कलर का कुर्ता--

और कुछ लाइटिंग्स दिख रही हैं और भगवान के माले दिख रहे हैं।

डेकोरेशन फ्लावर का किया गया है।